नमस्कार! creating simple geometry in openfoam पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में मैं आपको दिखाउंगी
सरल geometry बनाने के बारे में
उस geometry को पैराव्यू में देखने के बारे में
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ linux operating system ubuntu वर्जन 1004 openfoam वर्जन 210 paraview वर्जन 3120
cfd में पूर्वप्रसंस्करण भाग में ज्योमेट्री बनाना और इसे मैश करना होता है
अब उदाहरण में पिछले ट्यूटोरियल का lid driven cavity केस लेते हैं
पिछले ट्यूटोरियल का पाथ याद करें
मैंने पहले ही कमांड टर्मिनल खोल लिया है और lid driven cavity के लिए पाथ प्रविष्ट कर लिया है
तीन फ़ोल्डर्स हैं 0 constant और system geometry constant के polymesh फोल्डर में है
कमांड टर्मिनल में टाइप करें: cd space constant और एंटर दबाएं
अब टाइप करें ls और एंटर दबाएं
इसमें एक अन्य फोल्डर है जो polymesh कहलाता है
अब टाइप करें: cd space polymesh और एंटर दबाएं
अब टाइप करें: ls और एंटर दबाएं
यह ज्योमेट्री फाइल रखता है जो blockmeshdict है
उस blockmeshdict फाइल को अपनी पसंद के एडिटर में खोलें
टर्मिनल में टाइप करें: gedit space blockmeshdictध्यान दें m और d बड़े अक्षर में हैं और एंटर दबाएं
अब मैं इसे कैप्चर एरिया में लाती हूँ
इसे मिनिमाइज़ करती हूँ
स्लाइड पर वापस जाती हूँ
openfoam में पूरी ज्योमेट्री ब्लॉक्स में विभाजित होती है
ब्लॉक्स फिगर में प्रदर्शित की तरह नंबर 0 ज़ीरो से शुरू होते हैं
ध्यान दें ओपनफोम में 2d ज्योमेट्री बनाने के लिए आपको zएक्सिस में यूनिट सेल मोटाई वैल्यू देनी है
lid driven cavity की लम्बाई 1 और ऊँचाई 1 है स्लाइड को मिनिमाइज़ करें
अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें create document > empty file चुनकर एक खाली फाइल बनाएं इसे blockmeshdict नाम दें ध्यान दें m और d बड़े अक्षर में हैं
इसे खोलें अब मूल lid driven cavity blockmeshdict फाइल से डेटा को ज़ीरो लाइन से नयी blockmeshdict में कॉपी करें
ऊपर लाइन 0 तक जाएँ converttometers तक इसे कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें
नीचे जाएँ अब converttometers के बाद कुछ जगह छोड़ें
1 प्रविष्ट करें क्योंकि ज्योमेट्री मीटर में है सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं
दोबारा एंटर दबाएं फाइल में टाइप करें vertices और एंटर दबाएं
ओपन ब्रैकेट लगाएं और एंटर दबाएं
tab की key दबाएं पॉइंट 0 से शुरू करें ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं
0 space 0 space 0और एंटर दबाएं दोबारा tab की key दबाएं ओपन क्लोज़ ब्रैकेट
धनात्मक xएक्सिस पर पॉइंट 1 तक आगे बढ़ते हैं और प्रविष्ट करें 1 space 0 space 0 और एंटर दबाएं
दोबारा tab की key दबाएं ओपन क्लोज़ ब्रैकेट धनात्मक xy प्लेन पर पॉइंट 2 तक आगे बढ़ते हैं और प्रविष्ट करें 1 space 1 space 0 और एंटर दबाएं
दोबारा tab की key दबाएं ओपन क्लोज़ ब्रैकेट धनात्मक yएक्सिस पर तीसरा पॉइंट प्रबिष्ट करते हैं 0 space 1 space 0 एंटर दबाएं
दोबारा tab की key दबाएं सामने के पृष्ट पर चौथा पॉइंट प्रविष्ट करेंओपन क्लोज़ ब्रैकेट 0 space 0 space 01 और एंटर दबाएं
उसी प्रकार धनात्मक zएक्सिस पर एक यूनिट वैल्यू के साथ अन्य पॉइंट्स प्रविष्ट करें
ब्रैकेट बंद करें और इसके बाद एक सेमीकॉलन लगाएं एंटर दबाएं दोबारा एंटर दबाएं
vertices के नीचे ब्लॉक्स हैं टाइप करें blocks और एंटर दबाएं एक ओपन ब्रैकेट लगाएं और एंटर दबाएं
अब मैं स्लाइड्स पर वापस आती हूँ
ध्यान दें lid driven cavity को एकल ब्लॉक की तरह लिया गया है
अब मैं blockmeshdict पर वापस आती हूँ
ब्लॉक के लिए दक्षिणावर्त दिशा में पॉइंट्स प्रविष्ट करें
यहाँ हम मैशिंग के लिए hexa hedral blocks उपयोग कर रहे हैं
अब टाइप करें hex कुछ जगह छोड़ें ब्रैकेट्स में प्रविष्ट करें 0 space 1 space 2 space 3 space 4 space 5 space 6 space 7 दोबारा कुछ जगह छोड़ें
ध्यान दें मल्टीपल ब्लॉक्स के लिए अधिक पॉइंट्स होंगे
इसके बाद x y और z दिशाओं में ग्रिड पॉइंट्स प्रविष्ट करें
ब्रैकेट्स में ओपन क्लोज़ ब्रैकेट प्रविष्ट करें 30 space 30 space 1 कुछ जगह छोड़ें आप जब ज़रुरत हो तब उस ग्रिड में परिवर्तन कर सकते हैं
zएक्सिस में ग्रिड पॉइंट को 1 लिया जा सकता है
अब कुछ जगह छोड़ें और टाइप करें simple grading कुछ जगह छोड़ें ओपन क्लोज़ ब्रैकेट प्रविष्ट करें 1 space 1 space 1
यह x y और z दिशाओं में ग्रिड स्पेसिंग है एंटर दबाएं
क्लोज़ ब्रैकेट एक सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं
दोबारा एंटर दबाएं अब टाइप करें edges और एंटर दबाएं
क्योंकि यह सरल ज्योमेट्री है edges को खाली रखा जा सकता है
ओपन ब्रैकेट लगाएं एंटर दबाएं ब्रैकेट बंद करें एक सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं
दोबारा एंटर दबाएं edges के नीचे बाउंड्री कंडीशंस हैं
यहाँ आपको पृष्ठों के लिए बाउंड्री नाम प्रविष्ट करने हैं
टाइप करें और एंटर दबाएं
एक ओपन ब्रैकेट लगाएं और एंटर दबाएं
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ
ज्योमेट्री में ऊपरी सतह गतिमान है और अन्य तीन सतहें स्थिर हैं
अगली और पिछली सतहों के नाम empty हैं क्योंकि यह एक 2d प्रॉब्लम है
एक बार फिर नयी blockmeshdict फाइल खोलें
boundary में patch का नाम moving wall दें एंटर दबाएं
अब एक ओपन कर्ली ब्रैकेट लगाएं और एंटर दबाएं
अब moving wall के लिए type लिखें प्रविष्ट करें type स्पेस wall
एक सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं
अब ओपन ब्रैकेट लगाएं और एंटर दबाएं tab की key दबाएं ओपन क्लोज़ ब्रैकेट
इस ब्रैकेट में पृष्ठों के लिए पॉइंट्स प्रविष्ट करें
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ
ध्यान दें कि पॉइंट्स का क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि अँगूठा पृष्ठ के लम्ब में और
उँगलियाँ चित्र में प्रदर्शित की तरह घूमी हुई होनी चाहिए
घुमाव दक्षिणावर्त या वामावर्त हो सकता है
यह भी ध्यान दें कि पॉइंट्स vertices में प्रविष्ट किये हुए पॉइंट्स से मेल खाने चाहिए
अब मैं नयी blockmeshdict फाइल पर जाती हूँ
अब पृष्ठों में प्रविष्ट करें 3 space 7 space 6 space 2
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ ये गतिमान दीवार 3 7 6 2 के लिए पॉइंट्स हैं
इसे मिनिमाइज़ करें ध्यान दें कि आप उस पृष्ठ पर किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं अब एंटर दबाएं
ब्रैकेट बंद करें दोबारा एंटर दबाएं
एक अन्य नोट: पृष्ठों के पॉइंट्स प्रविष्ट करने के बाद हमें सेमीकोलन प्रविष्ट करना है अब कर्ली ब्रैकेट्स के बाद एंटर दबाएं दोबारा एंटर दबाएं
अब उसी प्रकार स्थिर दीवारों के लिए boundary condition और faces प्रविष्ट करें
2d प्रॉब्लम होने के कारण अगले और पिछले पृष्ठों के लिए बाउंड्री के प्रकार को खाली रखा जा सकता है
स्लाइड के चित्र को देखें पॉइंट्स प्रविष्ट करने के लिए इसे मिनिमाइज़ करें
क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं सेमीकोलन और एंटर दबाएं एक बार फिर एंटर दबाएं
अब टाइप करें mergepatchpairs और एंटर दबाएं
चूँकि यहाँ मर्ज करने के लिए पैचेस नहीं हैं इसे खाली रखा जा सकता है
ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं एक सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं
हमने blockmeshdict फाइल बना ली है इसे सेव करें
पूर्ण blockmeshdict फाइल यहाँ देखी जा सकती है
दोनों blockmeshdict फाइल्स को बंद करें
ध्यान दें कि कमांड टर्मिनल तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक blockmeshdict फाइल बंद न हो जाये
टर्मिनल पर वापस जाएँ अब cavity फोल्डर पर वापस जाने के लिए टाइप करें cd space dot dot दो बार अब ज्योमेट्री को मैश करते हैं
यह करने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें: blockmesh और एंटर दबाएं
अब ज्योमेट्री देखने के लिए कमांड टर्मिनल पर टाइप करें parafoam और एंटर दबाएं
यह paraview विंडो खोलेगा
अब बायीं तरफ object inspector मेन्यू में apply पर क्लिक करें इस तरह से आप ज्योमेट्री देख सकते हैं
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ
इस tutorial में हमने सीखा:
openfoam में एक सरल ज्योमेट्री बनाना
paraview में ज्योमेट्री देखना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
नियत कार्य में
lid driven cavity के परिमाण बदलें ग्रिड का साइज़ बदलकर 50 50 1 करें और paraview में ज्योमेट्री देखें
इस url पर उपलब्ध वीडियो देखें: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
ऑनलइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spokentutorialorg पर लिखें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
यह भारत सरकार के mhrd के ict के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकरी इस url पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद